वाइट कलर के कपड़े पहनकर येलो कलर के ब्लू कलर के ब्लैक कलर के और स्काई ब्लू कलर के--

पिंक ग्रीन और येलो कलर गेट्स दरवाजे का कलर है।

और कुछ छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।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

स्काई ब्लू कलर है और पेड़ दिखाई दे रहे है जो ग्रे कलर का है इसके जर्मन का कलर मिट्टी कलर है ग्रीन कलर है इसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

इसमें आसमान का कलर ग्रीन है ऑरेंज है--

जो वाइट कलर की है इसमें ढेर सारी खिड़कियां दिखाई दे रही जो ब्लैक और येलो कलर की है।

और वाइट कलर के इसके कुछ बोर्डर लगे हुए हैं इसमें--

यहां हमें घर दिखाई दे रहा है जो रेड वाइट और ग्रे कलर का है।

दरवाजे का कलर ब्लैक है इसमें ढेर सारी वाइट कलर की मुर्गियां दिखाई दे रही है इसके दुकान का कलर ब्लैक कलर है और इसमें कुछ बोर्ड लगे हुए हैं।

ब्लू कलर केस में वाइट और येलो कलर से लिखी हुई है।

लड़के कुछ दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक और ग्रे कलर के हैं।

वाइट कलर की है ग्रे कलर की है मिट्टी कलर की है और ब्लैक कलर की है।